ये एंट्री गेट है जो लोहे का बना हुआ हरे रंग का है।

यहां पे सीढिया बनी हुई है जिस पे से लोग आ जा रहे हैं।

ये एक कीर्ति योगा नाम की जगह पे बैठे हुए सब लोग योगा कर रहे हैं।

यह एक वेटिंग रूम सा नजर आ रहा है यहां खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं वेट करने के लिए।

एक एक सफेद कलर का और ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है नोटिस बोर्ड जिसमें नोटिस लगे हुए हैं।

डी_आर_डी एक सौ चौंतीस और एक महिला यहां पर--

ये मुद्राए बता रहे हैं और यहां की मैट नीली और--

इसके ऊपर एक कट्टा रखा हुआ है छत में एक लाल रंग की बाल है।